और यह येलो कलर के होते हैं और यह ग्रीन कलर के उनकी डंडिया हैं और अच्छे दिख रहे हैं।

नीचे जमीन में गड़े हुए हैं अंदर वाइट कलर का पेंट हैं ।

वहाँ पर कुछ पेड़े लगे हुए है हरे-भरे दिख रहे है।

और जो अंकल जी बैठे हुए हैं वो व्हाइट कलर की टी सर्ट सी पहने हैं और वह मछली बेच रहे हैं और तसला दिखा रहा हैं और वहाँ और भी लोग--

और इस तरफ भी एक लड़के का पोस्टर लगा हुआ हैं और नीचे वाइट कलर से फ्रेंड्स लिखा हुआ हैं।

इस चित्र में एक बहुत पुराना सा खंडर सा दिख रहा है जहां दो आगे स्तंभ से है जो आई मीन स्लेटी से कलर के--

और उसमें पेंट पुता हुआ है और येह दीवाल येल्लो कलर की दिख रही है बच्चे व्हाइट कलर के कपड़े --

और उसका कांच दिख रहा है सामने वाला और ऊपर यहाँ रही है और नीचे यहाँ एक अंकल जी सो रहे--